रेड कलर के सब लोग कुर्ते पहने हुए है और कुछ गेंदे के फूले लगे हुए है और कुछ घंटी लगी हुई है और एक लड़का दिख रहा है जो येल्लो कलर का कुर्ता पहने हैं ।

आस पास और कुप्पा रखे है। डार्क ब्लू कलर की रखी है। सोल ओड़े हुए है एक अंकल जी।

पिक्चर में एक चर्च दिख रहा है । चर्च का प्लस का निशान दिख रहा है रेड कलर में और व्हाइट कलर का पेंट दिख रहा है । कुछ छोटे बच्चे दिख रहे है ।

इस पिक्चर में एक तीन लड़का दिख दे रहे हैं और वह ब्लैक और थोड़े से पिंक सी कलर की लाइनिंग वाली टी शर्ट पहने हुए है हाथ में मोबाइल लिये हुए हैं ।

व्हाइट कलर की वह हाथ एक दूसरे से मिला रहे हैं। एक सिर पे टोपी लगाए हुए हैं।